और इन भवनों के बाहर बहुत सारे दो पहिया वाहन खड़े हुए हैं और एक टेंपो भी है।

जहां बहुत सारी मात्रा मे फ्रिज --

दर्शया गया चित्र मुझे किसी सड़क के किनारे बने हुए छोटे से होटल का लग रहा है।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा काउंटर है इस काउंटर के अंदर --

प्रस्तुत दिखाया हुआ चित्र किसी ई मित्र की दुकान का है।

यहां बहुत सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं तथा इन्हें कंप्यूटरों के पास --

इस इलेक्ट्रॉनिक्स के शॉप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान रखे हुए हैं।

इस सीमेंट की दुकान मे मुझे कुछ छोटी छोटी पाइप्स भी नज़र आ रही है।

दिखाया गया चित्र एक बड़े भवन का है जिस भवन के बाहर एक गार्डन बना हुआ है।

मुझे किसी सड़क की किनारे लगे हुए मछली बाजार का नजर आ रहा है।

फोटोज रखी हुई है जिन फोटोज के ऊपर--